पार बिटि भी तीन विकेट छा लग्यां यख मा हम ते कुछ लाइनिंग भी छ दिखेणी जु सफेद रंग की छा यु दिखेणा मा एक क्रिकेट की पिच छ लग्णी जु दिखेणा मा बहोत साफ छा लग्णी।

पार बिटि हम तैं एक बड़ी ईमारत छ दिखेणी जै कू रंग सफ़ेद छ दिखेणे से इमारत चर्च छ लगणी।

अर यखम एक और रास्ता छ जाणु जु फंडे की तरफ छ जाणु जु दिखेण से एक पार्क छ लगणु।

ये चित्र मा हमते एक छोटू तलाब छ दिखेणु जु एक जाली का भित्तर छ यख फण हमते कुछ जानवर छन दिखेणा जुं ते हम कछुआ भी बोल्दा छन।